चीजे जो बहोत सारी नमकीन और कुरकुरे दिखाई दे रहे हैं।

हरे रंग की टी शर्ट पहन रखी है कमरे का रंग नीला है।

एक फेवीक्विक की लाईन भी लटक रही है। दो तीन बोतले भी रख रखी है जो फ्रिज के ऊपर रखी है साइड में।

ऊपर एक चांद दिखाई दे रहा है साथ में बिजली के तार दिखाई--